घना-घना पहाड़ से पहाड़ है जिसके ऊपर काफी बड़ा-बड़ा पेड़ और घाँसे नज़र आ रही है ।

इस फोटो में एक ऐतिहासीक भवन दिखाई दे रहा है ऊपर खुला आसमान नज़र आ रहा है दीवार भी दिखाई दे रही है दीवार के पास कई पेड़ छोटे-छोटे पौधे नज़र आ रहे है।

बंध गोभी रखे जो की काफी हरी-हरी बड़ी-बड़ी दिखाई दे रही है ।

इस फोटो में अगल-बगल काफी सारे पेड़ - पौधा तथा बिच में एक सड़क है सड़क के पर साइड किनारे --

सजा रखा है तथा नीचे बाउंड्री है बाउंड्री भी हरे रंग का पेंट है और वाइट कलर का हो रखा है आगे की ओर छोटे - छोटे पौधे लगा रखे है।

सामने क्या लड़ियो से जड़ा एक लाइट का भवन दिखाई दे रहा हैं जो काफी सुन्दर दिखाई दे रहा हैं।

इस फोटो में ए शादी का समारोह चल रहा है पार्टी तथा एक वाइट बीचो बिच दिखाई दे रही है कार एक वाइट कलर की कार है।

एक कार नज़र आ रही है कार की पीछे की डिक्की खुली है यह कार वाइट कलर की है तथा ये पेट्रोल पंप के पास है।

बोक्सेक्स लगे हुए है एक खम्भा भी है बगल में उसके दुकान भी है जो की छतरी टाइप की है।

अचली ये गिम है गिम के ऊपर के लाइट पंखे भी नजर आ रहे है तथा निचे कालीन रंग बीरंगे बिछा रखी है।